यह एक ग्राउन्ड को दर्शाया गया है जो बहुत ही देखने में मनमोहक लग रहा है जो बहुत ही हरा-भरा है। यह देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है। यहाँ ग्राउंड पे एक शख्स खड़ा है जो कुछ कर रहा है।